ऊपर बहुत सारे लाइटें भी लगी हुई है।

जहां पर क्रमबद्ध कतार से बहुत सारी समाने रखी गई है।

तथा नीचे भी समानें रखी हुई है।

खिड़कियां भी हैं जिसमें हरे रंग के परदे लगे हुएं हैं।

जहां दो पेट्रोल पंप लगा हुआ--

इसमें स्क्रम बध लाइन से एक सीढ़ी भी बनी हुई है।

चट्टाने भी बनी हुई है तथा एक बड़ा सा पेड़ भी सामने खड़ा हुआ है।

यहां पर बहुत सारे फूल व पौधे की नर्सरी के पौधे रखे हुए हैं।

जहाँ दुकान में बहुत सारे सामानें लटकी हुई है।

यहां पर बहुत सारे बच्चे--

सफेद रंग का पैंट पहेन कर--

तथा एक लड़के ने काले रंग का टी शर्ट --

नीले रंग का मास्क पहना हुवा हैं।

यहा पर एक बहुत बड़े मैदान का दृश्य है।

जहां सामने एक दरवाजा है।

तथा साइड पे लाल रंग का दीवाल है।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

कुछ दूर पे कुछ मकाने भी बनी हुई है रोड में पहुंच से लोग खड़े हुए हैं।

सामने दो लोग बैठे कर योगा करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

नीचे लाल रंग का टाइल्स लगा हुआ है।

यहां बहुत छोटे छोटे पौधे गमलों में क्रमबद्ध कतार से रखी गई है।

लोग के लिए खाने का सामान रखा हुआ है।

रैक में बहुत सारे सामान उपस्थित है।

ऊपर सफेद रंग के दो परदे लगे हुए हैं।

दूर तक मैदान फैला हुआ है।

यह एक कंस्ट्रक्शन साइट का दृश्य है।

कुछ दूर में नीले रंग का मशीन भी रखा हुआ है।